किराना स्टोर है यहां बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

यह बहुत सुंदर दिख रहा है यह रात का समय का टाइम है यह बहुत अच्छा लग रहा है।

अह ये लड़का शर्ट पहना हुआ है पैंट पहना हुआ है चप्पल पहना है और ये सेल्फी ले रहा है और बगल से लाइट्स दिख रही है बिल्डिंग्स दिख रही है।

यह एक आइसक्रीम की दुकान है जहां फ्रिज रखे हुए हैं उसपे अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स है।

पौधे लगे हुए हैं और हवा भी बहोत चल रही--

हिरन्स बहोत सुंदर दिख रहा है हिरन के बगल मे बहोत सारी चीजें रखी हुई हैं छोटी छोटी।

यह एक डायरी है यह मिश्रा डायरी है यह संपर्क करने का भी सुविधा--

अ सामान भी रखे हुए है यहां मशीन भी रखा हुआ--

यह एक नर्सिंग होम है। यहाँ बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके के पौधे हैं फूल्स के पौधे हैं।

बहोत सुंन्दर सुंन्दर पौधे लगे हुआ है यहाँ।

यह एक बहोत सुंदर बिल्डिंग है बाहर से बहोत ही अच्छा लग रहा है यह बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं।

उसे बनाने में सब मदद कर रहे हैं वहां एक कर भी रखी हुई है यहां एक--

यह रॉयल बुल गाड़ी रखी हुई है औ बहोत सुंदर दिख रही है।

आजू बाजू बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यह बहोत सुंदर दिख रहा है यहाँ बड़ी-बड़ी पौधे लगी हुई है बड़ी-बड़ी जंगले है बड़ी-बड़ी चट्टाने है।